यह बुलेट काफी अच्छा है ऐ बुलेट --

ये किचन का स्कूल हैं।

यह एक मस्जिद है यह मस्जिद काफी बड़ा है।